ब्लू और ब्लैक कलर का शर्ट और पेंट टंगा हुआ है ।

और केले की पत्ते पर एक प्लेट में अच्छे से परोसा गया --

जहां पर रेड कलर का एक --

बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

बहुत सारी चटाइयां बिछाई हुई है।

केसर कलर का पर्दा लगा हुआ है वाइट कलर का--

दो सोफा रखा हुआ है।

पेड़-पौधे रखे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है यहां पर ट्रक लगी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पर चटाई बिछाकर कुछ लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं और योगा--

एक लड़की बैठकर बहुत सारी घड़ियां बेच रही है जहां पर--

पिंक कलर का कपड़े पहने हुए हैं औरतीनी--

येलो और ग्रीन कलर के --

ब्रिज दिख रही है।

जिसके नीचे एक बाइक खड़ी हुई बैकग्राउंड नीला कलर का दिख रहा है।